यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और टावर्स आपको नज़र आ रहे है बिजली की तार आपको दिखाई दे रहे है और कुछ लोहे के खम्बे बने हुए है यहाँ पे जिस घर पे बिम्म्स वगेरा बनाते हैवैसे और सामने आपको पेड़ नज़र--

अ-यहा पे शॉप है दिन का समय हो रहा है और इसके पीछे पुराना मकान बना हुआ है साइड मे बाइक खड़ा है जो ब्लैक कलर का है और एक इलेक्ट्रिसिटी टॉवएर बना हुआ है यहा पर।

यहा पर ट्रेन का पटरी दिख रहा है और यहा पे कुछ लोग खड़ा हुआ भी है।

ये एक सायकल का दुकान है और यहा पे बहुत सारी साइकिल रखी हुयी है एक दुकान बंद है उसके सामने भी साइकिल रखी हुई है।